इस पार्क के बिच में एक फव्वारा भी लगाया गया है जो इसमें लाइटिंग के साथ बहुत बढ़िया और खुबसूरत दिखता है। इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते है और इस पार्क को घूमने के लिए आते हैं।